इस फोटो में एक अफज़ल फर्नीचर फैक्ट्री में मुझे दिख रही हैं रोज हम पीले कलर के बॉक्स से --

के आगे है यहाँ पे बेड ड्रिफ सोफा डाइनिंग फ़र्नी फर्नीचर ये सब यहाँ पे बिकती है।

यह एक मुस्लिम का टेम्पल है जिसको मोस्कियु कहते हैं यहाँ पे मुस्लिम लोग अपने अल्लहा से प्रे करते हैं अपने भगववान से प्रे करते हैं ।